सामने एक दुकान हैं जिसमें बहुत सारी समान रखा गया है।

और एक आदमी है जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पेहने हुए हैं।

जिन्होंने लाल और काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

भूरे और सफेद रंग का है।

सफेद रंग का है और कुछ पेड़ पौधे है जोकि हरे रंग के हैं।

सामने बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जो की--

और कुछ रिक्शा है जो की हरे और पीले रंग के हैं।

कुर्सी है जिसका रंग भूरे रंग का है।

बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

और एक आदमी ने सफेद और काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।